इस चित्र में हमें एक मेडिकल स्टोर दिख रहा है यहाँ बहुत सारी दवाइयां नजर आ रही हैं यहाँ एक कैमरा दिख रहा--

इस चित्र में व्हाईट कलर की मस्जिद दिख रही है यहां एक छत नजर आ रही है यहां बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ा स्विमिंग पूल दिख रहा है यहाँ एक फिसल पट्टी नजर आ रही है कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं वाइट टंकी दिख रही है।

इस चित्र में एक फ्रिज दिख रहा है पर्दा नजर आ रहा है एक बड़ा बेड नजर आ रहा है।

इस चित्र में कुछ लोग दिख रहे हैं कुछ पेड़ नज़र आ रहे हैं कुछ बिल्डिंग्स दिख रही हैं कुछ ऑटो जाते हुए दिखाई दिख रहे हैं।

इस चित्र में बुक सेल दिख रही है बहुत सारी बुक नज़र आ रही हैं कुछ बल्ब दिख रहे हैं एक पोस्टर नजर आ रहा है।

इस चित्र में बोहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं यहाँ कच्चा रोड नजर आ रहा है कुछ लोग बैठे दिख रहे हैं कुछ मंजिल बनी हुई दिख रही हैं।

दिखाई दिख रहे हैं यहाँ बहुत सारे पर्दे लगे नजर आ रहे हैं कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक ट्रेन खड़ी दिख रही है कुछ पेड़ लगे नजर आ रहे हैं बहुत सारी मिट्टी दिख रही है एक पर्दा लगा नजर आ रहा है।

इस चित्र में कुछ लोग बैठे दिख रहे हैं कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं यहाँ एक बड़ा तालाब नजर आ रहा है।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

इस चित्र में एक ग्राउंड दिख रहा है बोहोत सारे घर नज़र आ रहे हैं कुछ कार खड़ी नज़र आ रही हैं कुछ पेड़ लगे नज़र आ रहे हैं।

इस चित्र में दो इंसान खड़े दिख रहे हैं ब्लैक पोस्टर नजर आ रहा है रेड कार खड़ी दिख रही है कुछ पेड़ लगे नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में कपड़ों की दुकान दिख रही है बहुत सारे कपड़े टंगे नजर आ रहे हैं बच्चों के एस्कर्ट --